और शायद यह बुलेट हैंगी और साइड पर गैस टाइप का हैगा| यहाँ पर कांच लगे हुए हैं और लाइटें हैगी नीचे अलग-अलग ही यह पूरी नइ है यह काफी अच्छी--

यहाँ पर एक केक हैगा उसमे काफी सारे ओरेओ बिस्कुट और पर्क वगेरा डेरी मिल्क लगी हुई हैंगी।